अ ये एक छोटा सा हॉल है। जिसमे एक मेज बिछी हुई है। जिसके ऊपर नीले कलर की चादर डली हुई है।

ये एक बोहोत बड़ा तालाब है यहाँ पे तालाब में अला तालाब मे अलग-अलग तरह के झूले लगे हुए हैं।